इस फोटो में मुझे कुर्सी नजर आ रही है।

मुझे बादल नजर आ रहा है।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

इस फोटो में मुझे पानी नजर आ रहा है इस फोटो में मुझे घर नजर आ रहे हैं।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

जिला उमरिया नजर आ रहा है इस फोटो में मुझे चपरासी नजर आ रहा है।

इस फोटो में मुझे कॉफी की दुकान नजर आ रही है।

इस फोटो में मुझे स्टेशन नजर आ रहा है।

इस फोटो मे मुझे एक किराना की शॉप नज़र आ रही है।

सूट नजर आ रहा है इस फोटो में मुझे डमी नजर आ रही है।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

कि मशीन नज़र आ रही--